टीडी बा हरा भरा पेड़-पौधा दिखत बा ए बहुत सुंदर दिखत बा खुबसुरत दिखत नाओ में ए आदमी बाने बहुत सुंदर दिखत बा।

एक कृष्णा का मूर्ति है यह बहोत सुंदर दिखत बा अच्छा दिखत बा और कृष्णा जी का मूर्ति बहोत अच्छा दिखत बा कृष्णा के मूर्ति दिखत बा।